तस्वीर में हमें एक टीचर स्टाफ रूम दिखाई दे रहा है जहाँ पर हम एक बड़े से टेबल के सामने बहुत सारे टीचर्स को बैठा हुआ देख --

यहाँ दूर हमें कुछ लोग देखने को मिल रहे हैं कई सारे काउंटर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें बड़े-बड़े ऐनक लगे हुए देखने को मिल रहे हैं सामन भी हमें यहाँ पे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं एक टीवी भी हमें दिख रहा है।